यहां पर कांच की कई सारे खिड़कियां दिख रही है।

पीछे की ओर एक बड़ा सा बोर्ड दिखाई दे रहा है।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

मैदान में कई सारी हरियाली दिखाई दे रही है मुझे यहाँ डायनोसर का एक स्टेच्यू भी दिखाई दे रहा है।